यहां डांस प्रतियोगिता चल रहा है। जिसमें छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे है।

यह दृश्य काफी बहुत बड़े होटल का लग रहा है।

एक ब्रेन्जड लगा हुआ है। बगल में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

इसमें खिड़कियां काफी सुंदर दिख रही है।

इसमें लोहे का सभी सामग्री है इसमें एक घर घर टाइप का है जिसमें की गेट लगा हुआ है।

इसमें एक रूम है जिसको पुट्टी किया हुआ है।

सभी में फिफ्टी परसेंट का सेल चल रहा है व्हाइट कलर के शर्ट है लाल कलर की शर्ट हैं ब्लैक कलर के जींस --

यह एक रोड का सीन लग रहा है इसमें एक आदमी जा रहा है।

उनका भी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है बगल में पेड़ लगे हुए हैं।

दो जन दिख रहे है और इसमें अच्छी तरीके से बैलूम को सजाया हुआ है।

कुछ बैलून लाल कुछ बैलून सफेद दिख रहा है और जिसमें एक लैपटॉप भी दिख रहा है।

यह दुकान काफी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है इसके बाहर फिफ्टी पर्सेंट ऑफ का प्रचार किया हुआ है।

इस दुकान के बाहर इस्मार्ट लिखा हुआ है।

इसके बगल में रोड क्रॉस हुआ है एक सुखी लकड़ी दिख रहा हैं बहुत सारे पोल दिख रहे है एक ट्रांसफार्मर दिख रहा हैं।

इसमें एक कुर्सी लगा हुआ है और शिशा का गेट लग रहा है रंग बिरंगे कुछ अलग-अलग प्रकार की चमकीले बल नजर आ रहे है।

इसमें एक रोड भी दिख रहा है।

लड़के लड़कियां सभी कुछ कोई ब्लैक कलर के कोई ग्रीन कलर के जूते पहने हैं।

उधर दो सेटर लगा हुआ है बहुत बड़ा मंजिल दिख रहा है।

कोकोला का एक फ्रिज रखा हुआ है। जिसपे बहुत सारे कोकोकोला माजा ओजा रखे हुए है।